ये देख सकते हैं ये एक पार्क का दृश्य है रात का समय है यहाँ पे लाइट लगाया लगाया गया है फवारा काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है वेल वेल लाइटेड लाइट और फवारा मिलके बहुत ही खूबसूरत दृश्य बन --

यहाँ एक अ देवी माता का मंदिर है आगे का गेट है अंदर मंदिर है यहाँ पे ढेर सारे लम्बे-लम्बे खजूर वह अन्य पौ अन्य आ वृक्ष है जो कि इस जगह को का काफ़ी खूबसूरत बना रहे है यहाँ बिजली कि आपूर्ति भी भरपूर है।

यहाँ बच्चों का क्लास है जिसमें बच्चे बैठ कर के एक साथ पढाई कर रहे है काफी रूचि है बच्चों मे पढाई और पेंट वगेरा को ले करके बच्चे बहुत ही खुशी से दृश्य बना रहे हैं ।

यहाँ मन्दिर के आ मंदिर का व्यू है मंदिर काफी सुंदर है लेकिन यह जगह भी काफी स्वच्छ और सुंदर है यहाँ पर दरी बिछाया गया है और बहुत से श्रद्धांजलु बैठे हुए हैं श्रद्धा पूर्वक और एक जो बाबा जी है ब लोगो को अच्छा ज्ञान सिखा रहे हैं।